इस तस्वीर में मुझे खुले मैदान में कुछ लोगों ने अपना दुकान लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं।

और ये काफी अच्छा है डेकोरेशन है। इसे देख कर ऐसा लग रहा है कि ये किसी समारोह का तैयारी चल रहा है।